इसमें आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर का दिख रहा है ।

चढ़ाने के लिए रूम बनाया गया है ।

बहुत सारे रखा हुआ है।